साथ ही हम यहां पेड़ पौधे भी देख पा रहे हैं। यहां हमें एक आदमी भी नजर आ रहा है।

दूर हम एक घर भी देख पा रहे हे साथ ही हमें वहाँ बहुत सारे पेड़ भी देखने को मिल रहे हे।

तस्वीर में हमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है वही हम यहां कुछ बिल्डिंग भी देख पा रहे हैं यह दृश्य देखकर हमें ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि यह कोई सरकारी ऑफिस हो।

तरह के डंबलस भी रखे हुए दिखाई दे रहें हैं यहां हम बड़े बड़े एनाक भी देख पा रहें हैं देखने में या दृश्य अच्छा लग रहा है।